प्रिंटर कनेक्शन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स 1210 ओएस और कैनन प्रिंटर अब मैं आपको कंप्यूटर के अनेक भागों के बारे में जल्दी से बताउंगी
यह सीपीयू है
मॉनिटर कीबोर्ड माउस और प्रिंटर अब सीपीयू को देखते हैं
बहुत से सीपीयू में यूएसबी पोर्ट्स आगे होते हैं और कुछ में पीछे
अब प्रिंटर पर एक निगाह डालते हैं
सामान्यतः प्रिंटर पर आगे या ऊपर पावर स्विच होता है
और प्रिंटर के पीछे एक पावर स्लॉट और एक यूएसबी पोर्ट होता है
एक प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमे एक यूएसबी केबल उपयोग करना होता है
अब यूएसबी केबल को प्रिंटर से जोड़ते हैं
अब केबल का दूसरा सिरा सीपीयू के यूएसबी पोर्ट से जोड़ते हैं
अब हमारा प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़ गया है
प्रिंटर पर जो पावर बटन है उसे ऑन करें
अब हम अपने कंप्यूटर का उपयोग प्रिंटर को कॉन्फ़िगर यानि स्थापित करने में करते हैं
अब डेस्कटॉप पर जाते हैं
सबसे ऊपर बाएं हाथ की तरफ लांचर बार पर डैश होम आइकन पर क्लिक करें सर्च बार में टाइप करें प्रिंटिंग प्रिंटर आइकन प्रदर्शित होगा
इस पर क्लिक करें
उबन्टु के पुराने वर्जन्स में सिस्टम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग प्रिंटिंग पर क्लिक करें
अब प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स खुलता है
यह बताता है There आरे नो प्रिंटर्स कॉन्फिगर्ड येत
ऊपरी बाएं कोने पर हरे प्लस साइन के साथ एक एड बटन है
इस पर क्लिक करें
यह न्यू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स खोलेगा
बाएं हाथ की तरफ कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर उपकरणों की सूची प्रदर्शित है
यहाँ अपना प्रिंटर चुनते हैं यानि कैनन प्रिंटर और फॉरवर्ड पर क्लिक करें
फिर यह अपने आप से उपकरण को ढूँढना शुरू करेगा
मैं कैंसिल पर क्लिक करुँगी
अब डायलॉग बॉक्स चूसे ड्राइवर विकल्प पर जाता है
ज़्यादातर स्थितियों में डिफ़ॉल्ट विकल्प कार्य करेगा
चूँकि मेरे पास कैनन प्रिंटर है यहाँ इस सूची में यह डिफ़ॉल्ट रूप से चुना गया है
अब फॉरवर्ड पर क्लिक करें
मॉडल पेज में मेरा प्रिंटर मॉडल स्वचालित रूप से पाया गया है
यह ब्रैकेट में रिकमेंडेड रेकमेन्डड की तरह दर्शाया गया है
ड्राइवर्स सेक्शन में भी यह दिखाता है कि ड्राइवर मेरे प्रिंटर के लिए ठीक है
अब फॉरवर्ड फॉरवर्ड पर दोबारा क्लिक करें
अब हमसे हमारे प्रिंटर के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जाता है प्रिंटर का नाम और उसकी लोकेशन
मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रखूंगी और एप्ली पर क्लिक करूंगी
हमारा प्रिंटर सफलतापूर्वक कंप्यूटर से जुड़ गया है
एक मैसेज दिखता है वाउल्ड यू लाइक टो प्रिंट आ टेस्ट page
अब प्रिंट टेस्ट पेज विकल्प पर क्लिक करें
एक मैसेज के साथ पॉप अप दिखता है सबमिटेड - टेस्ट पेज सबमिटेड एएस जॉब और इसका नंबर
ओक पर क्लिक करें
प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स में दोबारा ओक पर क्लिक करें
यह हमारे प्रिंटर से एक टेस्ट प्रिंट है
अब हमारा प्रिंटर हमारे डॉक्युमेंट्स को प्रिंट करने के लिए तैयार है
अब प्रिंटर डायलॉग बॉक्स बंद करते हैं
अब मैं जल्दी दिखाती हूँ कि डॉक्युमेंट कैसे प्रिंट करते हैं
एक डॉक्युमेंट खोलें
फिर एकसाथ Ctrl और प कीज़ दबाएं
प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है
ध्यान दें कि जुड़ा हुआ प्रिंटर डिफ़ॉल्ट रूप से चुना गया है
डायलॉग बॉक्स में हमारे पास कई विकल्प हैं
रंगे पेज की रेंज चुनने की अनुमति देता है जो हम चाहते हैं
यहाँ रेंज में कुछ विकल्प उपलब्ध हैं
अल्ल पेजेस विकल्प डॉक्युमेंट के सारे पेज प्रिंट करता है
करेंट पेज विकल्प केवल करेंट यानि वर्तमान चुना हुआ पेज प्रिंट करता है
पेजेस विकल्प हमारे विशेष विवरण के आधार पर पेज प्रिंट करता है उदाहरण 3 से 4 आगे अब कॉपीज में उपलब्ध विकल्पों को देखते हैं
कॉपीज विकल्प वह है जहाँ हम अपनी इच्छानुसार प्रतियों की संख्या चुनते हैं
अगर हम कॉपीज में 2 प्रविष्ट करते हैं तो चुने हुए पेज की दो प्रतियाँ प्रिंट की जाएँगी
औए प्रिंट बटन पर क्लिक करें
अगर आपने अपना प्रिंटर ठीक से कॉन्फ़िगर यानि स्थापित कर लिया है तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जायेगा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
हमने सीखा प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना
प्रिंटर की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर यानि स्थापित करना
डॉक्युमेंट प्रिंट करना
और हमने कई उपलब्ध प्रिंट विकल्पों के बारे में भी सीखा
हम आशा करते हैं यह जानकारी सहायक थी
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद